पर्पल दिवारें हैं इसकी और यहाँ दीवारों पे बहोत बड़े-बड़े मिरर लगे हुए हैं। यहाँ पे दीवारों पे विंडो बनी हुई हैं जहाँ से रोशनी आ रही है ।

ये गेरेज हैयहाँ पर एक कार खड़ी हुई है ग्रे कलर की ओर यहाँ पर लाइट के बोर्ड है बहुत सारे एक सोफा लगा हैब्लू कलर का एन्ड ग्रे कलर की कार है इसके ब्लेक के टायर हैटाईल्स लगे हुये है पुरे रूम में।

ये एक शॉप है यहाँ पे बहुत सारी शॉप में अलमारीये हैं और इस अलमारियों में बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं| ब्लू कलर के पिंक कलर के येल्लो कलर के बड़े-बड़े बॉक्सेस |

पिंक है व्हाइट पिंक ब्लू एंड ग्रीन कलर की येल्लो कलर की एंड गार्डन के बीच मे झरना लगा हुआ है।

उसपे लिखा है भारतीय स्टेट बैंक एंड वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

ये घर की टैरिस है टैरिस के ऊपर थ्री गल्स जो कि एक्सरसाइज कर रही हैं।